पिल्लर्स पे ब्लू है और थोड़ा सा ग्रीन कलर भी दिखाई दे रहा है एक पेट्रोल पंप पे एक जगह काफी सारी बाइक्स की लाइन है सामने दुकान है।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

यहाँ पर हमें एक ब्रिज दिखाई दे रहा हैं ऊप उम्म फ्रंट वाला लोहे का ब्रिज वो रेलवे ब्रिज हैं साइड में जो हमें रेलिंग दिख रही हैं।

लेफ्ट साइड मे गैस की टंकी ग्रीन कलर का स्टूल और एक और स्टूल पर पानी का गुब्बा रखा हुआ है साइड में बहुत बड़ा पिलर है उसे पर घड़ी है पिलर के नीचे दुकान जैसी एक घर दिख रहा हैं--

हमे एक बस दिखाई दे रही हैं जो की ब्लैक कलर की दिखाई दे रही हैं बस के सामने दो हेडलाइट्स जलते हुए दिखाई दे रहे हैं ये एक रोड पर चल रही हैं साइड में हमे एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा हैं।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

और के सामने काफी सारा स्पेस जो है वो खाली है और यहाँ पर हमें काफी सारी और भी दिखाई दे--